और यहां पर एक पुराना मंदिर बना हुआ है।

और दो डंपर खड़े हुए हैं। एक डंपर रेड कलर का है और एक डंपर व्हाईट कलर का है।

और रोड के सामने एक घर दिख रहा है वह व्हाइट कलर का है।

और यहां पर कुछ आदमी और औरतें भी है।

गेट भी दिख रहा है जहां से हम अंदर जा सकते हैं।

यहां पर मुझे सब्जी भाजी की दुकान दिख रही है।

और ग्राउंड के सामने एक खंभा टंगा हुआ है।

यहां पर मुझे कुछ मूर्तियां दिख रही है।

यहाँ पर मुझे एक बच्चा दिख रहा है उसके सामने एक स्विमिंग पूल बना हुआ है और यहाँ पर एक --

यहां पर मुझे एक बड़ा सा हरे कलर का ग्राउंड दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक जंगल दिख रहा है।

और कुछ लोग पूजा कर रहे हैं और उसके सामने एक फ्लाई ओवर दिख रहा है।